उसको बहुत फूल से सजाए है और गमला भी दिखाई दे रहे है छीन पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

और नीलगिरी भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और कार भी दिखाई दे रहा है और गेट भी दिखाई दे रहा है और कितना धूल भी दिखाई दे रहा है।

नीला कलर का पोताया भी है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।

खम्भा भी दिखाई दे रहा है तार भी दिखाई दे रहे हैं।

और सड़क पर दिखाई दे रहा है दरवाजा बंद बंद है और आम पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और दरवाजा भी दिखाई दे रहे है और बहुत सारे लोग भी और खंभा भी दिखाई दे रहे है तार भी दिखाई दे रहा हैं।